पिली सर्ट पहने हुए बो काला पेण्ट पहने हुए एम.एस फेबस लिखा हैं यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हैं।